यख मा जी कई सारा लोग छन यखमा जी सामने मा जी एक बड़ु बारिकु मंदिर छ दिखेण लग्युं।

यु एक लुह क पाइप दिख्येण लग्युं यख मा जी लाल रंग कुछ का छन यख मा जी एक काली रंगे बाल्टी कर रखींयख पिछड़ी मा जी गेट लग्यां गेट माँ जी कुछ पोस्टर लग्यां यख मा जी एक नीला रंगो बोर्ड लग्युं।

ये कुछ पेटी करां रखीं और ये कुछ थैला करां रख्यां यु थैला भीतर कई सारा काम्ब्ला भी छ रख्यां रंग बिरंगा काम्ब्ला छन रख्यां।

स्कूटी बाइक छन यख फण चन्न लगीं कई सारा लोगन यख मजी ऑटो रिक्शा भी छन चन्न लगीं यख मजी लाइटन लगीं बिजली का कई सारा तारम दिखेण लग्यां खिड़की न यख फण दिखेण लगीं।